पंखे के नीचे खिड़की है सामने एक एग्जॉस्ट फैन लगा है ऊपर लाइटें जल रही हैं ।

टेबल के बगल में एक छोटी सी दो टेबल है जिसके ऊपर टोकरी में फल रखे हुए हैं बीच में एक आदमी खड़ा है।

जमीन पे एक लोहे का पाइप पड़ा है दो छोटे-छोटे पाइप हैं ।

फूलों को प्लास्टिक की शीट के ऊपर रखा गया है पीछे तो खाली डलियां पड़ी हैं।

काली फ्रिज के बगल में एक और फ्रिज है जिसका ढक्कन लाल रंग का है दीवार में एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें अलग-अलग तरीके के केक बने हैं।